यह एक रोड का पेड़ है इसपे एक खम्बा लगा हुआ है एक ब्यानर लगा हुआ है वनरक्षक --

यहा एक झोपड़ी जैसी बनाई गयी हुई है इसमे बीच मे एक रास्ता है यहा एक सफ़ेद रंग का चिता भी दिखाई दे रहा है।

जिसमे बहुत सारे पिले कलर का भी हैं लाल कलर भी हैं सफ़ेद कलर हैं।

और दो-तीन कलर के जीन्स है एक आदमी भी है सारे जीन्स कम और के रखा गया है।

ये एक ब्लॅक अँड व्हाईट दृश्य दिखाई दे रहा हैं ये बहुत ही अतिसुंदर लग रहा हैं।

उसमे कही सारे लोग स्वीट वगेरा खरीद रहे हैं और वहाँ जो लिखा हुआ हैं वो रेड कलर से लिखा हुआ हैं।